ये घर बना सफेद रंग सफ़ेद और नीला आसमान है बगल मे पेड़ पौधे हरी पत्तिया है छोटे छोटे बॉक्स लगे हुई है जो भूरे रंग की है बगल मे पर्दा लगा हुआ है जो हरी पत्ति है।

जो अंकल खुरसी मे बैठे हुये है बाल कटाए जा रहे एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीले रंग का कपड़ा पेहना हुवा है।

लाल रंग की कर है नीले रंग का सफ़ेद और नीला आसमान है और बगल मे एक घर बना हुआ है जो नीले रंग की है बाल्कनी मे इन गल-गुलदस्त रखे गए है जो कत्थे रंग के छोटे छोटे पेड़ लगी हुई है ।

स्विमिंग पूल है जो काफी पानी भरा हुवा है हाथी की चित्र बने हुवे है।